और कार के दोनों पहिये भी खोल दिए गए हैं। एक और कार काली रंग की उसके बगल में खड़ी है और ये एक गैराज है।